बैलून सब लगा हुआ है पर्दा है दौड़ने वाला मशीन है | सब जॉगिंग करने आता है |

इधर गाछ सब है पेड़ है।

बाइक सब लगा हुआ है | आदमी सब है |

लगा हुआ है प्लस का चीन्हा है ऊपर में।

यहाँ पर न्यू सैलून खोला गया है बड़ा-सा।

सिर्फ शूज का सैंडिल का है।

कॉपी किताब आगे में बेच रहा है पेंसिल सब है।

बहुत बड़ा नदी है उसको उधर गाछ-वृछ सब --

ये बाद में पानी देने वाला है।

यहाँ पे स्लीपिंग करने वाला है | यहाँ पर भी है यहाँ पर जुड़ने वाला है | पीछे गाछ वृक्ष सब लगा हुआ है।

ये पशु का डॉक्टर है पशुओं का।

एक पीला सी टी-शर्ट पहना है एक ब्लैक टी-शर्ट पहना है।